इसके बाद एक साइड सीढ़ी है जिससे इनकी बाइक - ताइक अंदर कर सके| इधर होड़ी बनाया हुआ है जिसमे की पानी-तानी ऊपर से आता होगा और बगल में भी घर है| उसके बाद इसमें ब्रिक्स - विक्स लगा हुआ है यह पूर्णिया यूनिवर्सिटी लग रहा है।

ये वही नंगा बाबा की तस्वीरें है जो की इसमें भगवान बुद्ध दोनों तरफ से बैठे हुए हैं बीच में नंगा बाबा है| उसके बाद यह एक सीसा का मंदिर के टाइप में--

यह पूर्णिया की मांझी चौक का है जहाँ की उम स्टाइल बाजार का कुछ लगा हुआ है सेटिंग प्रेसिंग --

उसके बाद एक आदमी महजिद के पास आए रेड कलर का ऊपर में एक निकला हुआ | इधर-उधर वृक्ष में लगा हुआ है| एक कार लगा हुआ है इधर एक टिन का झोपड़ी है जिसमें की आदमी को एक बाइक भी लगा हुआ है| उसके बाद एक पिलर पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है बड़ा-सा।

ब-बगल में एक गमला भी है और बगल में ए-एक डस्टबिन भी रखा हुआ है| बगल में एक कुछ है जिसके बारे में पता नहीं।